जिसके ऊपर लिखा है छे द मैक्सिकन फूड ऑन व्हील्स ।

इसके अंदर कुछ अ पत्थर रखे गए हैं जो डिजाइन की गई है।

मिर्ची रखे हुए है सामने की ओर हरी और लाल --

यह एक अ जिम एरिया जैसा दिख रहा है जहां बहोत बड़ा कांच लगाया गया है।

और रैक में कुछ बहोत सारे डंबल्स भी रखे गए हैं।

सामने की ओर लॉरिअल लिखा गया है और दो बेसिन टाइप दिख रहा है।

चित्र में आप देख सकते हैं कि एक झरना बह रहा है।

बहुत लोग भी नजर आ रहे हैं और एक आंटी दो आंटी लोग झाड़ू मारते हुए भी दिख रहे हैं।

यहाँ एक रुम जैसा दिख रहा है लॉबी एरिया ।

जहां कुछ चेयर रखे गए है बाहर तरह तरह के।

और रूम के बाहर हेना बोर्ड भी मारा गया है।

चित्र में आप देख सकते हैं कि आप एक पहाड़ी इलाका दिख रहा होगा जहां बड़े बड़े--

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एक किराना की दुकान जैसी नजर आ रही है।

इसमें बहोत सारे सामान रखे गए हैं जैसे की सोयाबीन है कुछ मसाले हैं कुछ बिस्किट्स रखे गए हैं।

चित्र में हम देख सकते है की एक दुकान नजर आ रही है।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि आपको मंदिर नजर आ रहा होगा दो तरीके का एक सामने की ओर है और एक चित्र एकदम नजदीक की साइड है।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

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक ये कंपनी जैसा दिख रहा है जिसमें मशीन लगाई गई है।

इसमें बहोत सारे लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

बाहर की ओर दिवालों पे बहुत सारे फोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं।

कुछ लोग रास्ते पे चलते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग ओ की बाइक्स भी पड़ी हुई हैं।

चित्र में आप देख सकते हैं कि एक फंक्शनहॉल जैसा दिख रहा है जो गार्डन एरिया में है।

सोफा भी रखे गए हैं और व्हाइट चेयर्स भी रखी गई है अलग से।

जिसमें बहोत सारी बाइक आगे की ओर पार्किंग करके रखी है।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक काले रंग की प्लेट रखी गई है।

चित्र में आप देख सकते हैं कि एक घर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है।

इस मंदिर का नाम है श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर --

साइड की ओर पानी की बोतल है जिसके ऊपर एक ग्लास रखा है।

इनके पास बहुत सारी मच्छियां पड़ी हुई हैं और वो मच्छियां काट रहे हैं।

वो का चर्च दिख रहा है।

दोनों तरफ रेड बोर्ड लगाया गया है।

चित्र में बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं जिन बच्चों के मुंह को ब्लर कर दिया गया है।

कस्टमाइज्ड किया गया है केक में एक घर जैसा दिख रहा है बाहर दो बतख लगाए गए हैं।

यह एक होटल जैसा दिख रहा है जिसका नाम सूरति फरसान गुजराती काठियावाड़ी लिखा है।

साइड पे लिखा गया है मेगा सुगर स्पाइस वेज जय गुजरात फरसान कठियावाडी सूरत गुजरात।

यह एक पत्थर जैसा दिख रहा है जिसमें भगवान की मूर्ति बनी हुई है।

चित्र मे बहोत सारी गाड़ियां दिख रही है रिक्शा दिख रही है।

कुछ लोग भी दिख रहे हैं बाइक के ऊपर सवार होते हुए।

जिसमें सामने की ओर एक टेबल रखी है दो चेयर है।

इस चित्र में एक कैफे जैसा दिख रहा है।

फ्रिज है प्रकारों के सैमसंग है एल_जी है।

जिसका नाम चूल्हा है द रियल डेसी स्टेट टेस्ट --

और इसमें लिखा है गुजराती पंजाबी काठियावाड़ी साउथ इंडियन चाइनीस --

इसमें वाशिंग मशीन रखे गए हैं ए_सी रखे गए हैं टी_वी भी है।